जो छाता लिए दिखाई दे रहे है और लड़कियाँ भी दिखाई दे रही है लाल -लाल छाता लेवे दूसरा भी व्यक्ति दिखाई दे रहे है जैसे कुछ खुदने वाला कुछ उद्घाटन होने वाला हैं।

-- और एक गाड़ी भी दिखायी दे रही टैक्सी भी दिखायी दे रही जो हाईवे रोड पे हमारी पेड़ -पौधॆ भी अच्छी दिखाई दे--